लाइट को बंद अच्छा कर रखा है और यहां पे आप देख सकते हो नीचे लाइट भी लगी हुई है।

यहां पे ये आदमी ऑटो में बैठा हुआ है और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे हरियाली पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और पीछे यहां बहुत बड़ा वो रखा है।

यहां पे आप देख सकते हो ये आलमिया खड़े हुए हैं।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

और इसके गेट का रंग ब्लैक कलर का है आप देख सकते हो यहां पे--

यहां पे लवली लिखा हुआ है और यहां पे मेकअप का सामान मिलता है।

और यहां पे एक भी लगी हुई है यहां पे आप देख सकते हो।

जो हमारा झंडा है वो झंडा लगा हुआ है और झंडे का ऊपर ला संतरी बीच में सफेद और नीचे हरा--

और ये स्कूल का फंक्शन है यहां पे देख सकते हैं गुब्बारों से स्कूल सजा रखा है स्टेज सजा रखी है।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

बाइक है मोटर साइकिल है गाड़ी ऑटो ऐसी ऐसी--

यहां आप देख सकते बहुत अच्छा लग रहा है यहां एक--

यहां पे ये अमरूद का पेड़ है ये आदमी अमरूद का हाथ में ले रहा है ये पेड़ तो पता नहीं किस चीज का लेकिन ये हाथ में अमरूद ले रहा है।

हर तरफ इनवर्टर रखा हुआ है यहां पे डिश टी_वी रखी हुई है।